पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक तरफ फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा है और एक नीचे बैठा हुआ है।

इंस्टिट्यूट काफी बड़ा है। इंस्टिट्यूट के बाहर एक बहोत बड़ा मैदान है।